छोटा हाथी है बांस है आदमी है।

गाड़ी है बिल्डिंग में कुछ पेंट हुआ है।

खिड़की है दीवाल है।

आकाश है पेड़ है।